नीचे बहोत सारे रूम बने हुए है जो कि दरवाजे बंद किए हुए है ऊपर और भी दरवाजे और खिड़कियां लगी हुई है।

और पत्थर है वो सफेद कलर के है कुछ छोटे पत्थर है कुछ बड़े पत्थर है।

यहां पर एक मंदिर है बहुत ही बड़ी मंदिर की घंटी दिखाई दे रही है जो की लोहे की है और बीच में घंटी हैं बजने के लिए --